इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटें और लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

हम पीछे देख सकते हैं सोफे और दिखाई दे रहे हैं टेबले भी दिखाई दे रही है पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

जो कि टेबलो पर लगे हुए हैं और टेबलों के ऊपर प्लेटें भी दिखाई दे रही है इनके ऊपर फूल भी रख भी दिखाई दे रहे हैं और एक पंखा भी है जो की --

इसमें साइकिलें दिखाई दे रही हैं और झूले भी दिखाई दे रही हैं और इसमें देख सकते हैं कि टेडी बियर भी हैं और ऊपर देख सकते हैं।

मैं देख पा रहे हैं ब्लैक कलर भी है पिंक कलर भी है और वाइट कलर भी है और देख सकते हैं ब्लू कलर भी है और येलो कलर भी है।

एक आदमी है जोकि सामने खड़ा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर कुछ लोगों बना है जोकि मारुति का है।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बहोत सारी महिलाएं पूजा कर रही है जो की इसके पास में कुछ तेजी से दिखाई दे रही हैं।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

शहर को देख रहा है और देख सकते हैं पीछे छोटे छोटे--

पिक्चर है जिसमें की देख पा रहे हैं एक बड़ा सा टब है लेकिन उधर पड़ा हुआ है जोकि एक मशीन भी हो सकती है एक आदमी है जोकि उधर काम कर रहा है।

इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक गार्डन दिखाई दे रहा है जो कि हरा भरा बहुत है एक पेड़ पौधा है।

सामने देख सकते है घर और दिखाई दे रहे है और ऊपर देख सकते है आसमान है जो की बहोत ही बढ़िया साफ-सुधरा दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये किले के ऊपर की पिक्चर है जिसमें की दीवार बनी हुई दिखाई दे री है और ऊपर आसमान में देख सकते हैं।

यह एक स्वीट शॉप का चित्र है जिसमें कि देख पा रहे हैं रूप चंद मोहन लाल नाम से है इसमें पेड़ भी बहुत हो सारी हो रखी है।

और देख सकते हैं कि छत के ऊपर आ के लगा हुआ है जो कि बोर्ड है वहां पे गहरा --

इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी सी बड़ी सी दिखाई दे रही है जोकी कुछ बिल्डिंग भी हो सकती है या फिर कोई कॉलेज भी हो सकता है।

इस पिक्चर में हम देख सकते है कि एक हार्डवेयर की दुकान है जिसमें अभी बहोत सारे बॉक्स पड़े दिखाई दे रही है और बहोत सारी टेंस और भी दिखाई दे रही है।

अजीब सी दिखाई दे रही है मतलब की छोटी दुकान हो सकती है जिसमें की जैसे नीचे स्पीकर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक टी_वी है जोकि ऊपर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कुछ है।